और हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है और बाहर ये बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है और साइड में एक रोड गया है।

और इसमें बहुत ही रंग बिरंग गेंदा का फूल दिखाई दे रहे है और बहुत सारी आदमी रोड से आ रहे है देखने के लिए पार्क को और चारों साइड से असोका का वृक्ष लगा है जो कि बहुत सुंदर है।

और सारो साईट से बीच लगा है और साइड में मोका ए खेत लगा है जहाँ की काम एवं ठोकइया हो सके और दो-चार आदमी ये दिखाई दे रहे जो की बहुत ही खूबसूरत

जोकि बहुत हीअच्छा है और खम्भा है जोकि घर के ऊपर से दो-चार तारे गयें है।

फील्ड है जहां की बहुत सारी खरगोश या बकरी कहा जाये चल रहे है और एक दो बच्चे दिखाई दे रहे है और नहीं ये भेड़ी दिखाई दे रहे है।

और यहाँ दो-चार लोहे का गेट दिखाई दे रहे है एक बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहे है जिसमे की ऑयल पेट्रोल पम्प इंडिया लिखा गया है और बीच में फूल लगाया गया है जोकि बहुत हीं अच्छा बहुत ही सूं --

और बगल में घर बनाया गया है एक चर चक्का दिखाई दे रहे है और बहुत सारे अंधेरा में लाइट जल रहे है और दो-चार गमले में फूल रखा गया है।

घड है जहाँ की लगता है शादी या कोई फंक्शन है जहाँ की बहुत सारे गंदे फूल से सजाए गए है और बगल में गमले में दो चार गमले में बहुत सारे फूल रखा है ।